एक डाकघर के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है डाकघर नीले रंग का मकान है मकान के आसपास एक दरवाजा लगा हुआ है सामने में कुछ गाड़ी हैं।

चारों ओर बड़े बड़े पेड़ पौधे और बीच में कुछ गमलों और घांस के मैदान बनाया गया है बीच में कुछ छोटे झूले बने गए हैं।